यह सड़क काफी बड़ा है इस सड़क पर एक एल.पी. खड़ी है यह एल.पी. कोई सामान लेकर आई है।

यह टोटो तीन चक्के की है यह टोटो भाड़े मे चलती है इसमे चार तीन चार --

इस दुकान पर बहुत से ग्राहक आकर सामान खरीदते है यहाँ समान काफी सस्ती मिलती --

यहां पर बहुत सारे डॉक्टर रहते है।

इस सलाब पर बहुत सारे पानी भी है यहां बड़े-बड़े पेड़ भी है।

यहाँ पर बहोत सारे अनेक किस्म के मीठाई यहाँ बहोत से आदमी आकर यहाँ नाश्ता --

यह कॉलेज का नाम बी.एस.एस. कॉलेज सुपौल है यहाँ पर बहुत से --

इस जगह पर लिखा हुआ है राहुल जेनेरल स्टोर यहाँ पर --